ये एक मस्जिद है और मस्जिद के सामने ही एक रेडी सी लगी हुई है जो कि बरफ़ बिक रहा है।

और दो तीन आदमी इधर ओर कोई जा रहे है।

ये एक दुकान है इस दुकान के बाहर दो आदमी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं।

और कुछ आदमी दुकान के बाहर भीड़ लगाओ खड़े हुए है।

आसपास में और एक लाइट लगी हुई है।

ये एक जिम है इसमें जिम में कुछ पन्नियां पड़ी हैं। है।

बाहर से के दो पंखे लगे--

एक आदमी माइक पकड़ के बैठा है एक आदमी इधर को देख रहा हैं लीली सी शल्ट में।

और बहोत लाइटें लगी हुई हैं और एक बोर्ड भी लगा हुया है।

और चार बच्चे बाहर है जो कि उन्होंने फौजी वाले कपड़े पेहने हुए हैं।

ये एक दुकान है। इस दुकान में बोहोत सिया मूर्तियाँ धरी हैं।

जो कि सामान ले रहे है और ऊपर सी_सी कैमरा भी लग रहा है।

जो कि इस दुकान में लाइट अभी लगी हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक एजेंसी है जो कि उसके पास बहुत सारी कार खड़ी है।

जो कि बोहोत ऊंचा एक मंदिर --

और दो तीन नीचे ओ नीचे है।

यह एक सुंदर घर है।

जोकि इसके नीचे टाइल लगी हुई है ब्लैक कलर और सफेद कलर है।

कुछ आदमी रुके हुए हैं व एक्टिवा भी खड़ी है उधर।